मंदिर जैसा बना हुआ है उस उसके ऊपर में प्लस लिखा हुआ है।

ए म ये बुक ली गई है बुक ली है कोई लेडीज ली है कोई लड़का चश्मा पहना हुआ --

सदर अस्पताल अररिया करोना वाय वायरस ।

बीच-बीच में गाछ के बगल-बगल में बीच में कही ग्राउंड में उम बहुत बड़ा शीशा है।

कुछ लग रहा है नक्शा-तक्शा बनाया गया है अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ही शानदार --